एक्सरसाइज के लिए मशीन --

पिक्चर में हमें बहुत--

हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे--

हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें डेरी दिखाई दे रही है।

सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें लोग भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक व्यक्ति--

यहां पर लगभग पांच छ--

इंडिया लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर हमें एक टीचर भी दिखाई दे रही है।

भी दिखाई दे रई है।

दिखाई दे रहा है यहां पर--

तीन ब बच्चे झूला लेते दिखाई दे--

कैंडल्स शूस दिखाई दे रऐ हैं।

यहां पर हमें स्टेट बैंक दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें टेडी बियर नज़र आ रा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत--

सारे टायर्स नजर आ रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।